यह एक लोडिंग के ऊपर लगा हुआ है।

ये है एक बहुत ही पवित्र स्‍थान हैं।

पहाड़ को काटकर घर यह घर बनाये गए हैं।

यह किसी भवन के बाहर का दृश्‍य है।

इसमें पुरानी नक्‍काशी दिखाई दे रही हैं।

एवं एक टेंकर खड़ा हुआ है।

एवं सामने की ओर बड़ा सा पत्‍थर दिखाई दे रहा है।

ये है आई.एन.ए का बोर्ड लगा हुआ हैं।

यहां पर एक व्‍यक्ति नीचे जमीन की ओर लेटा हुआ हैं।